पलाइयों के बीच में एक कप रखा हुआ है एक डिब्बा रखा हुआ है।

एक हथौड़ी रखी हुई है।

लड़किया दब रही है मूर्ती में--

टोवल चेयर के ऊपर रखा हुआ है।

यहां पर एक खेत है।

इसमें छोटे छोटे पेड़ हैं।

पीछे एक बाइक खड़ी हुई है।

पीछे आदमीयों की भीड़ लगी हुई है पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

पीछे पेड़ पौधे दिख रही हैं।

व्हाइट कलर के स्टेज है।

खुलल है दो तीन आदमी हैं एक आदमी सीढ़ी लिए चल रहा है।

पीछे बैंकट हॉल सजा हुआ है लड़ि से।

टाइप का पर्दा है येलो कलर का--

सामने कुछ बोर्ड लगे हुए हैं साइड में एक लोहे की नाल है एक लेडिज अपना --

यहां पर कुछ आदमी लेंटर दे रहे हैं सीढ़ी है।

व्हाइट कलर की पीछे भी गाड़ी है बड़ी है।

फरश हो रहा है यहां पर सफेद पट्टी हुआ है।

यहां पर स्विमिंग पूल है यहां पर रेस लग रही है ऊपर कुछ बैठने के लिए कुर्सियां हैं।

है एक टेबल पर गिलास और फूल रखे हुए हैं।

पीछे अलग अलग डिजाइन बनी हुई है जो दिखाई दे रही है।

एक सामने पोस्टर लगा हुआ है।

साड़ी पेहन रही है कुछ सूट पेहन रही है आदमी नीचे बैठे हुए हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक घड़ी है।

अलग अलग तरह की बुक रखे हुए है लकड़ी के फोल्डर में--

यहां पर एक मकान है मकान के बाहर स्विमिंग पूल है।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

कलर येलो है दो तीन जंगले दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पर एक मीटर लगा हुआ है पाइप लगी हुई है।

दीवार पर लिखा हुआ है जे यू एस टी जस्ट ।

बराबर में कुछ लेडिस हैं पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ा सा पत्थर है पत्थर पर--

छोटी छोटी सीढ़ियां बना रखी हैं ऊपर तक--

नीचे खिड़की दिखाई दे रही है पीछे एक छोटा सा टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें एक छोटी चेयर रखी हुई है।

यह एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक ब्लू कलर का टेंट लगा हुआ है बहुत से आदमी है।

दीवार पर डिजाइन बने हुए हैं तो उसे लाइट लगी हुई है रंग बिरंगी।

कुछ बैग है पीछे लड़के बैठे हुए हैं।

पीछे डिजाइन बनाया हुआ है।

यहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ है नॉनवेज खाना मना है।

गुमती है कुछ प्लेट है।

इसका नाम है एम_आई डबल टी_ए_एल ।

तीन चार गट्टे रखे हुए हैं।

तुरी जा रही है जय माता की लिखा हुआ है।